यहाँ पर प्याज टमाटे आलू अदरक लहसुन हर चीज मौजूद है और लोग यहाँ पर आकर खरीदारी कर रहे --

में रंग बिरंग फूला हैं यहां पर गुब्बारे हैं रंग बिरंग--

में एक दुकान है वहां पर खाने पीने की सब चीजें मौजूद हैं और यहां पर बड़े से तार पे बोटलां लटक रहे हैं।

आदमी ठहरा हुआ है और यहाँ पर कपड़े है और यहाँ पर बड़े-बड़े मशीना है और वो मशीनों में कपड़े है।

चित्र बोहोत ही हरी-भरी घास है बोहोत ही पेड़ पौधे हैं।

और यहां पे फैन मौजूद है।

यहां पर बोहोत ही अच्छे पेड़-पौधे है सूरज दिख रहा है।

यहाँ पर पीछे बोहोत ही हरे-भरे पेड़-पौधे मौजूद है और यहाँ पर बोहोत ही बड़ा आसमान है।